बहुत बढ़िया घर का डिजाइन दिया है ।

ये तो बहुत हजार से ऊपर हो जाएगा हजार तक तो हो ही जाएगा ।

फूल वगैरह गिरा हुआ है लग रहा है सरस्वती माता का फोटो है ।